फोटो में एक गार्डन नज़र आ रहा है जिसमे पर्पल सफ़ेद कलर के फूल खिले हुए है बॉउंड्री पर पिली पत्तीवाला घुम्मटनुमा बॉउंड्री बनी हुई है कुछ--

इसके पीछे काले पर्दा लटका हुआ है जिस पर लाइटनिंग बल्ब और इस्टार लटके हुए दिखाई दे रहे है जो अपने हाथ से पैर को पकडे हुए--

फोटो में एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी टाइल्स सफ़ेद और कत्थई रंग की नज़र आ रही है हॉल के ऊपर एंट्री बोर्ड के साइन लगे हुए है।

ऐसे फोटो में दो बसे नज़र आ रही है जिन बसों के सामने एक पीले कलर का मकान दिखाई दे रहा है एक बस का कलर पीला एक का हरा नज़र आ रहा है।

किया हुआ है जिनका हाथ आशीर्वाद के लिए उठा दिखाई दे रहा है उनके पीछे कुछ लकड़ी के लम्बू तम्बू और अ पीछे निचे ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

ये फोटो के ऊपर घास का छज्जा दिखाई दे रहा है और टाइल कलर कर के लगे हुए दिखाई दे रहे है पर्पल कलर का एक पर्दा लटका हुआ नज़र--

फोटो मे स्टेज पर कोई प्रोग्राम चलता हुआ नज़र आ रहा है जिसमे एल बलब है लाइट दिखाई दे रही है।